इसके बगल में एक ऑटो गाड़ी है ऑटो गाड़ी के अंदर एक आदमी है।

आदमी बैठा हुआ है यहां पे एक कुर्सी में एक बैग रखा हुआ है।

गांछ में बहोत सारे फूल हैं फूल का कलर ऑरेंज है।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पे बहोत सारे बैडमिंटन रखे हुए हैं।

यह एक स्टेज का दृश्य है यहां पर बहोत सारे लाइट लगे हुए हैं।

ये उसके बगल में बहुत सारी क्रीम रखे हुए हैं एक रेड कलर का बोतल है लड़के ने बाल कटाया है।

बिल्डिंग में सरस्वती मां का मूर्ति बना हुआ है।

पेड़ पौधे का रंग हरा भरा है उस बिल्डिंग में टंकी लगा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे लाइट लगे हुए हैं।

एक बच्चा है बच्चे क्या हाथ अपने पैर के ऊपर है।

यहां बैलून का डेकोरेशन किया हुआ है।

लड़की ने ब्लू कलर का टीशर्ट पहना हुआ है लड़का का बाल बहुत बड़ा बड़ा है।

लैपटॉप खुला हुआ है उसके बगल में एक पेन रखा हुआ है।

कप बगल में एक चम्मच रखा हुआ है।

उसके बगल में एक आदमी है आदमी का हाथ कमर पर है।

बार टेन इलेवन कैफे सफेद रंग सा लिखा हुआ है।

तारामाची के बगल में एक केले का पेड़ है केला का पेड़ का कलर हरा है।

यह एक के_जी_रॉय मेमोरियल कॉपरेटिव हॉस्पिटल का बाहर का दृश्य है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है यहां पे बहुत सारे बांस लगे हुए है।

बिल्डिंग के बाहर में एक बाइक है बाइक के बगल में बहोत सारे ईंटे रखे हुए है।